सामने हमे एक मूर्ति दिखाई दे रही है इस मूर्ति पर एक काला-काला मटका उस मूर्ति के हाथ मे रखा गया है और ये मटका कांच से बंद है।

और एक व्यक्ति मोबाइल पर फोटो शूट करते हुए नजर आ रहा है।

सामने हमें एक बस दिखाई दे रहा है जिस पर महादेव लिखा हुआ है और इस बस के कलर ब्राउन कलर की पेंटिंग से पेंट है और इस बस पर--

तथा यह बस के किनारे बहुत से पेड़ पोधे भी लगे हुए है।

सामने हमे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध जी की मूर्तिकी--

और तीनों मूर्तियो के सामने छोटा सा गुलदस्ता रखा हुआ है और मूर्तियों के पीछे कई बड़े-बड़े अशोक के पेड़ लगे हुए है वहा कई अलग पेड़ भी लगे हुए --

एक बड़ी सी चेयर राखी हुई है और इस चेयर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और इसकी डेकोरेट के लिए बहुत सारी सामग्रिया लगाई गई है।

सामने हमे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है इस हॉल पर बहुत सारे इन्स्ट्रुमेंट के सामान रखे हुए है जो की पावर प्लांट के अंदर--

इस पर दो व्यक्ति बैठे हुए है तथा नए घर के बाहर भी बहुत सारे कुरसिया लगी हुई है जिसपर कई व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने हमे एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है| इस नदी के किनारे-किनारे--

बहुत सारे बडे-बडे पेड़ पौधे लगे हुए है और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है नदी काफी तेज़ी से बहता हुआ नज़र आ रहा है।